कुछ फूल लगे हैं अ एक बाइक पे एक लड़का खड़ा हुआ है।

वहा पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही हो वहां पर कुछ फूल कुछ गमले रखे स्कूटी रखी है वहां पर।

कुछ जंगल है पत्थर दिखाई दे रहे हैं कुछ पौधा खड़ा हुआ है।

यहां पर एक मोबाइल का पैकेट हुआ है कुछ बॉक्स दिखाई दे रहे हैं मुझे--

स्टॉल एक आदमी खड़ा हुआ है मुझे--

मुझे यहां कुछ लोग ग्राउंड दिखाई दे रहा है।